जिसमें कुछ मुस्लिम की लिखावट के चित्र रखे हुए हैं।

कुछ प्लास्टिक पेन भी रखे हुए दिख रहे हैं।

साइड में कुछ बड़ी सी दो की रखी हुई है।

पीछे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं मैदान में घास भी लगी हुई दिख रही है।

ऊपर कुछ लाइटें भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और पीछे अंधेरा भी है।